जिसमें बहोत ही घने पेड़ दिख रहे हैं।

और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चाय की पत्ती भी लगाई गई होंगी यहाँ पर एक दिख रहा है ।

यहाँ लोग घूमने मज़े करने के लिए आते होंगे यहाँ नदी में नहाने का मन कर रहा है यह मंदिर बहोत सूंदर है।

यहां पर मुझे मेरे सामने में एक एक सड़क दिख रही है।

यह तरह तरह के फुग्गे लगे हुए है यह बहुत ही सुन्दर एक--

इसकी मालाये बनाईं जाती है और दीवारों पर लगाई जाती है ।